सुन्दरता को बहुत गहिन अध्यांता के आधार पर --

यह एक आर्किटेकट का सामूहिक चित्र है जो बिल्डिंग के लेंटर के पास खड़ा हुआ है तथा वह अपना एक सामूहिक चित्र निकलवा रहा है मोबाइल के जरिये से।

उस भगवान का दर्शन करने के लिए आये हुए है क्यूंकि वह एक चटान के अंदर मंदिर बनाया गया है वे ये नही बताए की वह अपने आप--

भगवान वहां पर स्तिथ हुए है यहाँ इन्हें किया गया है ये व्यक्तियों की आस्था का प्रतीक है की चटान के अंदर इस मंदिर को देखने के लिए वह अपनी --

और घी से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद प्रापत किये जाते है तथा व्यक्ति काउंटरस पे से टोकन लेकर वहा दुसरे काउंटर से सामान उपलब्ध कर सकता है।

सुंदरता से निराकरण किया गया है तथा एक झंडा भी लगाया गया है जिसकी सुंदर प्रतिमा का निराकरण ये है।

ये महंगी महंगी बाइको का शोरूम है बाइक के शोरूम के अंदर इतनी सुंदर व्यवस्ता की गई है ताकि इसका --

यह एक टमाटर का सामूहिक चित्रण दिखाई दे रहा है इसमें सभी प्रकार के टमाटर दिखाई दे रहे है तथा पीले लाल दो एक प्रकार के टमाटर दिखाई दे रहे है।